पीछे बिजली का टावर है ।

ऑटो सब आते-जाते दिखाई दे रहे है और बहोत ज्यादा संख्या में है कार सब भी बहोत ज्यादा संख्या में खड़े हुए नज़र आ रही है हर जगह बिजली के टावर दिखाई दे रहे है और पेड़ लगे है ।

और कुछ महिलाएं बैठी हुई है और एक महिला खड़ी हुई है एक महिला चप्पल पहनी है एक नहीं पहनी है।

उसके किनारे में कुछ घर दिखाई दे रहे है मिट्टी सब की बहुत सारी ढेर पड़ी हुई है।

यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है और बैग को भी पकड़ा हुआ है और वह किसी को देख रहा है उसके किनारे में बहोत बहु सारे दुकान लगे हुए है और कुछ सब बोतल में कुछ -कुछ रखे हुए है।

उनके बीच में कुछ छोटे-छोटी मूर्ति भी बनाई गई है हर तरफ को अच्छे से पत्ते से सजाया गया है ऊपर का रंग नीला नीला दिखाई दे रहा है।

यहाँ पे दो व्यक्ति छत को साफ करते नज़र आ रहे है बिच में एक बाल्टी है और एक व्यक्ति टोपी पहने हुआ है उसके किनारे में कुछ पाइप भी लगी हुई है और पीछे बिल्डिंग सब भी दिखाई देते हुए नज़र आ रहे है पेड़ भी बहोत हरे -हरे--